यहाँ पर मुझे एक कार टंगी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे एक इंसान कार को धोता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे कुछ--

टेब्ले और कुर्सी डली हुई दिखाई दे रही हैं बहुत सारी लाइटें लगी हुई दिखाई दे रही हैं बहुत सारे पंखे लगे दिखाई दे रहे है और ए_सी लगी हुई दिखाई दे रही है।

मंडप सजाने के वास्ते इसमें बहोत सारे फूल लगे दिखाई दे है कुछ गजरे टंगे हुए दिखाई दे रहे है पीछे लाइट जलते हुए दिखाई दे रहे है यहाँ कुछ परदे लगे हुए दिखाई दे रहे है।